दो होम थिएटर दिख रहे ब्लैक कलर के एक टेबल दिख रहा है जो कि रेड कलर का है इसकी टाइल्स व्हाइट और रेड कलर की है दिवारे सफेद दिख रही है एक डंबल्स की रॉड दि --

इस इमेज में मुझे जिम के कुछ सामान दिख रहे है प्लेट्स दिख रहे है ब्लैक कलर के डंबल्स दिख रहे है।

पलर का टेंट दिख रहा है उनके पीछे एक बहुत बड़ा बिल्डिंग दिख रही है बिल्डिंग में--

इमेज में मुझे कुछ बच्चे रंगोली निकलते हुआ दिख रहे हैं रंगोली का कलर हरा है रेड है पर्पल ह वाइट हैं।

बाजू मे राइट साइड मे एक बिल्डिंग दिख रही है जिसमे ब्लू कलर से लिखा गया है शासकीय सनातनी महाविद्यालय।

एक मोबाइल दिख रहा है काउंटर पे ब्लैक कलर का लड़का बैठा हुआ है आईने में कुछ लोग दिख रहे हैं आईने में एक ब्लैक कलर का सीलिंग फैन --